और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है जो एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए है।

इस इमेज में मुझे एक डाक्टर गरेश राय डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी --